एंड यहां झाड़ है रोड है बाइक एंड सब कुछ यहां पे--

एंड कितनी सारी प्रोडक्ट और दिख रही है गॉगल्स को छोड़कर बहोत सी सुंदर सी चीजें है।

रहने वाली कई लोग हैं यहां पे--

कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सब कुछ परफेक्ट है।

सी_बी_एस_सी भी यहां पर सिलेबस है।

यहां पे तीन कार रखी हुई हैं जो दो वाइट कलर की है एक ब्लैक कलर की है एंड एक साइड में कार एक--

कुछ रॉड रखे हुए हैं बहोत दूर दूर तक बिल्डिंग दिख री है जहां पे बहोत सारे मकान हैं जहां पे कुछ पेड़ है वायरस हैं।

ये एक क्लॉथिंग सेंटर है जहां क्लॉथस मिलते हैं अलग अलग--